यहां दो कुर्सियां और एक मेज भी रखा हुआ है जिसका छोटा सा पाट दी पार्ट दिख रही है।

के पास एक छोटा सा पेड़ भी है।

यहां एक ग्रीन कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में कमरे का अंदर का नजरिया दिखाया गया है जिसका दीवार का रंग सफेद है।

इस तस्वीर में पहाड़ियां इलाके और कई इमारतें दिखाई दे रही है।

गेट के अंदर बहुत सारा पाइन का ट्रीज है।

तस्वीर के सबसे आगे एक बोर्ड है जिसमें सिक्किम पुलिस हैडक्वाटर लिखा हुआ है।

गेट के बगल में एक छोटा सा गार्ड रूम भी है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मुख्य द्वार के ऊपर दो बड़े बड़े खिड़कियां भी है।

चित्र के आगे एक गाड़ी का छोटा सा पार्ट भी दिखाई दे रही है।

दुकान में कई तरह का ज्वैलरीज मूर्तियां और कपड़ा रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक टैटू स्टूडियो दिखाया गया है जिसका दीवार का रंग सफेद है।

दीवार पर एक पड़दे पर्दे जैसा कुछ लटका हुआ है जिसमें जियोमेट्रिक पैट्रन बना हुआ हैं।

कमरे में एक घूमता हुआ कुर्सी--

लकड़ी की रेलिंग वाली सीढ़ी एक ऊपर मंजिल की तरफ जा रही है।

सिरी के पास एक तीन सीटर वाला सोफा भी है जिसका रंग ब्लैक एंड ब्राउन हैं।

और सड़क के नीचे बहुत सारा केले का पेड़ लगा हुआ है।

इस तस्वीर में कपड़ों का दुकान या बुटीक दिखाई गई है।

रैक पर अलग अलग तरह के रंग और स्टाइल के कपड़े लटकी हुई है।

दुकान का दीवार सफेद रंग का है।

इस तस्वीर में आर्ट एंड फोटोग्राफी स्टूडियो दिखाया गया है।

इसमें एक दरवाजा भी है जिस पर ओपन लिखा हुआ है।

पर्दे और लाल कलर का स्वेटर रखा हुआ है।

टेबल के निचले भाग में काला कलर का बहुत सारा हैंगर टंगा हुआ हैं।

सोफे के पीछे एक ऑरेंज कलर का डब्बा रखा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारा पेस्ट्रीज और डोनट्स का वैरायटी दिखाया गया है।

गेट के अंदर में एक गाड़ी रुका हुआ है जिसका छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है।

चेयड़ पे दो आदमी बैठा हुआ है एक झोला भी रखा हुआ है।

जिसके नीचे से एक नदी बह रहा है।

जिसमें बहोत सारा हरा भरा पेड़ पौधे भी हैं।

ट्रेन के नीचे हरा रंग का घास भी है।

गेट के बगल में ऊपर जाने का एक रोड है जिसमें दो लोग ऊपर जा रहे हैं।

कमरे की दीवारों पर बहुत सारे तस्वीरे चिपकाई गई है।

और दीवार में नोटिस बोर्ड भी लगाई हुई है।

टेबल के ऊपर पानी सॉस नेपकिन और कुछ सामान रखी गई है।

किचन में लकड़ी का अलमारियां और एक दरवाजा भी दिख रहा है।

एक बड़ा सा खिड़की है जिसमें लोहे का ग्रिल लगा हुआ है।

दीवार पर एक सफेद बोर्ड और आगे एक मेज रखा हुआ है जिसके ऊपर कुछ समान रखा हुआ है।

बिल्डिंग के सामने और आसपास पेड़ पौधे और हरियाली है।

कुछ पेड़ों की जड़े लटकी हुई है।

बिल्डिंग में बहोत सारा खिड़कियां भी हैं।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें डिस्ट्रिक कोर्ट लिखा हुआ है।

जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़ हैं।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट का अंदर का नजरिया दिखाया गया है।

टेबल के ऊपर एक नैपकिन भी है।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

कमरे में चार चेयर और ऐक टेबल भी है।

और एक सेल्फ पर अन्य तरह के सामान रखा हुआ हैं।

मंदिर के चारों ओर पेड़ पौधे और हरियाली है।

इस तस्वीर में एक डैम दिखाया गया है।

जिसके नीचे से नदी बह रहा हैं।

चित्र के ऊपर की तरफ एक बिजली की तार भी दिखाई दे रही है ।

सोफे के बगल में एक फूलों का गमला भी रखा हुआ है।

स्टेडियम में बैठने के सीटे दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मंदिर दिखाई गई है।

यहाँ लाल कलर का पौधा भी दिखाई दे रही हैं।

पूरा जमीन हरा घास से ढका हुआ है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट का अंदर का नजरिया दिखाया गया हैं।

इस तस्वीर में एक धुंधला सा नदी दिखाई गई है।